यह एक चित्र है और इस चित्र में एक सरक दिखाई दे रहा है सरक पे कई सारी गाडियां चलती हुई दिखाईं दे रही है जिसमें कुछ सफेद रंग की कार और --

के पेड़ और भी कई तरह के पौधे लगाए गए हैं घर से बहार भी कई तरह के बड़े वृ --

इसे स्टेज पे कई सारे छोटे छोटी बच्ची नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे है जिसमें सभी बच्चे --

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक मशीन द्वारा जमीन को तोड़ा जा रहा है यहां एक इंजीनियर मशीन के द्वारा जमीन को --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

जलती हुई दिखाईं दे रही है और दू उपकरन।

मालगाड़ी की डिब्बा भी खड़ी हुई दिखाइ दे रही है यह रेलवे स्टेशन बिलकुल साफ दिखाई दे रहे हैं।

जा रहे हैं और इस विद्यालय में कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई देरे हैं विद्यालय के अंदर कई सारे साइकल्स को लगाया गया --

तेवे दीखाई दे रहे हैं आ इससे कुछ ही दुरी पे एक बोहोत ही बडी लोहो की --

एक दुसरे को एवॉड देते हुए दिखाई दे रहें हैं इस में कुछ फोटो का रंग सफेद और कुछ फोटो का रंग काला भी दीखाई दे रहा है।

रुद्रप्रयाग एक सौ पाँच लोक निर्माण विभाग आपके मंगल --